यह एक सुंदर सी कलरफुल तस्वीर है जो कि आपके सामने प्रस्तुत की गई है जैसा कि आप देख सकते हैं।

जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं यह एक इलेक्ट्रॉनिक --

साथी में बहोत सारी हरी भरी हरियाली--

नजर आ रही है यहां पर बहोत बड़ा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा--

यहां पर गाड़ीयो और उसको गाड़ियों बाइको स्कूटी की लाइन लगाए लगी हुई है।

टेबल चेयर लगी हुई है और यहां पर सैलून का सामान रखा--

यह तस्वीर एक पुराने समय के किले की दर्शायी गई हैं यह किसी तस्वीर देख कर समझ आता हैं यह कही राजमहल की तस्वीर है।

यह दूर की तस्वीर ली गई है।

यहां पर घर बना होटल ढाबे के बाहर--

टेबल चेयर स्ट्रक्चर बैठक बनाई गई दिखाई दे रही है जैसे की तस्वीर में देख पा रहे हैं।

रेस्टोरेंट को बनाया गया है यहां पर अ अंधेरे का समय होता जा रहा रात्रि का चित्र दर्शाया गया है।

यह तस्वीर एक परचून की दुकदान कि नजर आती है जैसा की तस्वीर में देख पा रहे हैं।

घड़ी दिखाई दे रही है यह एकदम न्यू ब्रांड चमकते हुए गाड़ी नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक ढाबे की नजर आती है जैसा की तस्वीर को देख पा रहे हैं।

यह ढाबे के बाहर की तस्वीर है यह संध्या का शाम होते हुए समय होते हुए नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक बुलेट बाइक्स की शो रूम की है जैसा की तस्वीर में देख ही पा रहे हैं।

जैसा की तस्वीर में देख सकते हैं यहां पर गोल किनारे--